बाहर गाड़िया है जाली मारी गयी धर खंभे वायरा भी दिख रहे है यहाँं पे आजु बाजू घरा है बड़े बड़े झाड़ा भी है यहाँं पे दिख रहे है।

ये यहा पे दो लड़के डांस कर रहे है ये डांस है ये--

और यहां पे गुड्स सर्विस टैक्स बिन का बोर्डस लगे हुए है निचे यहां पे नेशनल फ्लैग लगाया गया मेड बिछाया गया --

यह एक पार्किंग यार्ड है और यहां पे एक कॉलेज दिख रहा है मोर --

और आजू बाजू लोग ऊपर बहोत सारी यहां पे एल_ई_डी लाइट्स खाना पानी का जग ग्लासेस भी यहां पे रखे हुए हैं।

सामने अन्दर बाहर लोग बेंचा पे ओ कुर्सियों पर बेठे हुए हें बाहर बहोत सारी गाडिया हेलमेट आदमी भी खड़ा हुआ हें।

सामने छोटे छोटे पोधे है हा आजू बाजू बोत सारी बिल्डिंग आप ये दिख रहे है।

और यहा पे लाइट के खम्भे बड़े बड़े भी यहा आजू बाजु बोहोत सारे बड़े बड़े यहा पेड़ भी दिख रहे हें।

ये एक पार्क है बाजू में--

फेविकोल के यहा पे डब्बे बेचा रहा है --

ये एक छोटा सा तालाब हें यहा पे बोहोत सारे गधा दिख रहे हें वाइट कलर के --

और ये भोत बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ है रेती भी दिख रही है और --

ये एक बड़ा आ सा ग्राउंड है और यहां पे बास्केटबॉल की जाली मारी गई है।

और यहाँ पे बहुत सारे लेडीज हैं बास्केटबॉल यहाँ पे खेले रहे हैं आजू बाजू बहुत सारे लोग भी हैं वो खेल रहे ह--

आजू बाजु में मिटटी है हरी भरी घास आजू बाजु में बोहोत सारे बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे है यहां पे--

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ऊपर पानी दिख रहा है यहाँं पे सामने सीधी सी सड़क दिखरि --

यहा पे छोटे से रिंग सेप के पौधे लगाये गये हरी भरी घास है --

ये एक ज्वेलरी की दुकान है यहां पे--

यहां पे बोहोत सारे लोग बेन्चेस के ऊपर टेबल दाल लेके बेठे हुए हें बुकये में कुछ सामान हें यहा पे --

लोग आए पिए पीछे बहुत सारे फूलो के यहाँ पे शो प्लांट भी लगाए गये हैं यहाँ पे पीछे साइड में यहाँ पे लाइट खं--

और यहा पे स्टेज पर बोहोत सारी लडकिया डांस कर रहे हे यहा पे स्पीकर्स रखे हुए हे।

यहां पे बहोत सारे पतरे हरि भरी घास दिख रही--

भाई यह एक मैकेनिक शॉप है यहां पे सामने व्हाइट कलर की कार खड़ी हुई--

यहाँ पर गाडीक पूरा सामान है इंजन दिख रहा यहाँ पर --

ये एक मेकेनिक शॉप हे यहा पे बोहोत सारे कार आ खड़े हुए हे कलर के--

यहां पे कार का बोनेट खोला हुआ है व्हाइट का कार बना रहे हैं यहां पे बहुत सारे लोग हैं सामने।

ये एक मोबाइल शोरूम हैं यह पे बोहोत सारे लोग आये हुए हैं।

यहा पे शॉप में भी बहोत सारे यहा पे मोबाइल रखे हुए है।

अ यहां पे एस ट्वेंटी मोबाइल भी मिलता है फोन भी मिलता है।